और आप यहां पे देख सकते हैं साइकिल रिपेयरिंग भी है।

ये आप देख सकते हैं ये कोई हिल स्टेशन है जहां पे आप स्नोफॉल देख सकते है और स्नो देख सकते है चारों तरफ --

स्विमिंग पूल हैं। स्लाइड करते करते हम स्विमिंग पूल में आते हैं।

इस पिक्चर में आप देख सकते हैं दो बाइक खड़ी है एक ब्लैक कलर की एक ब्लू कलर की --

यहां पे आप अपना सारा ट्रीटमेंट करवा सकते हैं।

इस पिक्चर में हम देख सकते हैं ये एक स्टेशनरी शॉप है।

आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है इसको।